और लाइट तीन लाइट भी दिख रहे हैं।

शराब की बोतल रखी गई है।

इसमें दीवार पर हरे घास जैसे सजावटी बैनर लगे हैं।

चार खंभे दिख रहे हैं बिजली का तार भी है एक मारुति कार भी है।

इनका हाथ में महिला के हाथ में छत्री है चूड़ी है घड़ी भी पहनी हुई है पीला रंग की साडी पहनी हुई है पुरुष के ने अपना आई कार्ड पहना है।

और बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं और यहां पर जमीन में हरा कलर का कालीन बिछा हुआ है।

बहु सारे तरह के हैं पोली हाउस भी बना हुआ है जिसका नेट हरा कलर का है।

छोटे छोटे पौधे के लिए बीज का भंडारण भी किया गया है।

यह एक फैक्ट्री का सीन दिख रहा है जिस जो गोदाम जैसा है।

इसके पीछे में ब बहुत कुछ दो चार पांच आदमी बैठे--

यहां पर दो ट्रेन लगे हुए हैं ट्रेन के पास एक आदमी हरा झंडा लेकर खड़ा है एक आदमी उधर से आ रहा है रास्ते भी है।

ये सीन एक रूम का है जिसमें एक सोफा लगा हुआ है उस पे कोई बिछावन नहीं है।